लकड़ी दिखाई दे रही है और इन टेबलो पर व्हाइट कलर की प्लेट उल्टी रखी हुई है गिलास कांच के रखे हुए दिखाई दे रहे हैं। उल्टे और हमें सामने दीवार पर एक मूर्तियां बनी हो रही --

और हमें हम बहुत सारे तार भी लगे हुए दिख रहे हैं हमें खुद रेल हुए दिखाई जा रही है जो की नीले कलर की है और दो कुत्ते को दिख रहे हैं हमें।